गेंदा का फूल और एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और साइड में शटर में आप देख सकते हैं एक बाइक भी खड़ी हुई है सामने आधी शटर खुली है।

और गैस सिलेंडर रखा हुआ बाहर और काफी बड़ा ग्राउंड भी है घर के बाहर।

एक ये बड़ा सा हॉल है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारे वहां सिंक लगे हुए हैं।

और सामने ही कुछ सोफे लगे हुए हैं और बहुत प्यारा है।

अ अ सुपडी में ना ना कर रखा है कुछ फल फ्रूट है --

यहां आप देख सकते हैं एक छत बन रही है छत पे काफी सारे लोग--

आगे एक सामने है और जिसके सामने दो कार खड़ी हुई है।

कार भी पार्किंग है और बहुत सारी गाड़ियां भी पार्किंग में है।

और नीचे छोटा दरवाजा खुला हुआ हैं और एक सामने ए_सी भीं लगा हुआ--

और स्लाइड पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और ऊपर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं।